बिल्डिंग एक ऐसी स्कूल या कॉलेज की दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी सारे गेट नजर आ रहे है बिल्डिंग को काफी अच्छेसे डेकोरेट किया गया है यहाँ पर कुछ गमले नजर आ रहे है।

ब्रिज पर काफी सारी रेलिंग लगी हुई है यहाँ पर कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ कुछ घास नजर आ रही है यहाँ पे काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे--

नजर आ रहा है जंगल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए है यहा पर काफी सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाई दे रहे है।

डॅम के पास काफी सारे ब्रिज दिखाई दे रहे है यहाँ पर काफी सारे पत्थर नजर आ रहे है कुछ पत्थर काफी बड़े दिखाई दे रहे है यहाँ पे पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है यहाँ काफी सारे पेड़ नजर आ रहे --

यहाँ कुछ पानी की टंकी नजर आ रही है यहाँ कुछ रेत दिखाई दे रही है ऊपर कुछ झंडे नजर आ रहे है यहाँ कुछ लोग काम करते दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रही है फॅक्टरी काफी बड़ी दिखाई दे रही है फॅक्टरी में काफी सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर काफी सारी मशीने नजर आ रही है।

दिखाई दे रही है फैक्ट्री काफी बड़ी दिखाई दे रही है फैक्ट्री में काफी बड़े बड़े टैंक नजर आ रहे है।

दे रहा है हॉल में बिंग बॅग नजर आ रहा है यहापर कुछ फॅन दिखाई दे रहे है यहापर कुछ लाइट दिखाई दे रही है।